यह एक समुंदरी किनारा है। जहाँ पर लोग आते हैं घुमने फिरने के लिए पिकनिक मनाने के लिए आपस में बाते करते हैं।

यह एक बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल है और इसी के साथ में बहुत ही खूबसूरत --

एक पार्क बना हुआ है जहां पर लोग आते है बच्चे आते है पिकनिक मनाने के लिए घूमते है फिरते है और खेलते कूदते है और स्विमिंग करते है।

घूमते फिरते हैं। पिकनिक मनाते हैं और --

यह तरह तरह के फ्लावर पॉट है जिनमे से कई कलर के हुए हैं ।

जैसे ही उनका अअ हेलीकॉप्टर जाने के लिए तैयार होता है उनको बुला लिया जाता है ।